और यह मूर्ति देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है।

हर स्थान का मछली मिलता है यहाँ पे यहाँ का मछली ताजा होते हैं लोग--

यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते है।

हाई स्कूल में तरह -तरह के प्रतियोगिता होते रहते है हर रोज --

यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग आते है हर रोज सुबह को नहा धो के पूजा करने के लिए मंदिर में लोग अपना मन्नत मांगने के लिए आते हैं।